ये यहां पे देख सकते हो ये यहां पे भी पेड़ लगे हुए--

तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये सफेद रंग की गाड़ी है।

लाइट दिख रहे हैं यहां पे --

बहुत सारी बाइक और गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहां पे देख सकते हो पेड़ भी लगे हुए हैं।

डियर पार्क स्टार लिखा हुआ है और यहां पे ये आसमान भी दिख रहा है।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

एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पे गेट दिख रहा है और यहां पे ये खंभे रखे हुए है।

यहां पे यहां देख सकते हो--

और यहां पे बहोत सारे या--